यहां पे बहोत सारा पेड़ पौधा सा दिखाई दे रहा है यहां पे पार्क जैसा बैठने वाला दिखाई दे रहा है।

और वहां पे हरियाली चढ़ा हुआ है और आसमान का रंग बिछा दिखाई दे रहा है।

यह एक बड़ा सा कंपनी दिखाई दे रहा है कंपनी में बहुत व्हाईट कलर का आगे कुछ दिखाई नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक आदमी दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक पोस्टर दिखाई दे रहा है।

ओर यहां पे ऑक्सीजन वाला कुछ दिखाया जा रहा है रेड कलर का।

का रंग भी छेद दिखाई दे रहा है पेड़ पौधा सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है इस साइड एक घर दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे नीचे में बहुत सारा हरियाली घास छाई हुई यहाँ पे घिरा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे पेड़ पौधा से दिखाई दे रहा है।

ऊपर व्हाइट कलर का है उसमें बहुत सारा बल्ब हो रहा है यहां पे शीशा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पे खाना दिखाई दे रहा है यहां पे सलाद दिखाई दे रहा है यहां पे खीर दिखाई दे रहा है यहां पे रोटी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक फराक दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का और नीचे भी एक फराक धरा हुआ है इस साइड भी बहुत सारे आदमी सब पुतली सा फ्राक पहने हुए हैं।

यहाँ पे एक आदमी फ्राक धरे हुए है और उस साइड भी बहुत सारा मोटा सा दिखाई दे रहा है।

बिजली का तार दिखाई दे रहा है इस साइड भी थोड़ा बस दिखाई दे रहा है पीछे भी हरे पर पदे दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे एक बस दिखाई दे रहा है बस पे खलासी लटका हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे तीन चार आदमी दिखाई दे रहा है एक आदमी कुछ खा रहा है और यहाँ पे ताक रहा है दिखाई दे रहा है पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे --

यहाँ पे कुरकुरे से दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक घर दिखाई दे रहा है उस साइड जिस पर लाइट बड़ा है अंधेरी रात दिखाई दे रहा है आसमान का रंग ब्लैक दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक ट्रक दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक आदमी दिखाई दे रहा है जो मैक धरे हुए यहाँ पे एक लेडीज दिखाई दे रहा है जो भी मैक धरे हुए हैं यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे पंखा लगा हुआ है यहाँ पे हरा द --

यहाँ पे एक बच्चा दो पेड़ को पकड़े हुए जुरवा पेड़ को वहाँ पे खड़ा हुआ उस पर दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक पिकअप जाते का दिखाई दे रहा है पीछे बड़ा सा रूम हॉल दिखाई दे रहा है यहां पर शटर बंद दिखाई दे रहा है यहां पे--

दुकान खुला हुआ दिखाई दे रहा है पेड़ पौधा पीछे बहुत सारा दिखाई दे रहा है एंटीना दिखाई दे रहा है ऊपर बहुत आसमान का रंग व्हाईट कलर दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक बड़ा सा पुल दिखाई दे रहा है घिरा हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे व्हाईट कलर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे थोड़ा--

यहाँ पे बहुत सारा कुर्सी से लगा हुआ है बहुत सारे आदमी से बच्चे बच्चे सभी बैठे हुए हैं सी_ सी_ टी_ वी_ कैमरा लगा है।

बहुत सारे गेम सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे खिड़की से दिखाई दे रहा है पोस्टर सा टंगा हुआ है।

और यहां पे एक दो तीन आदमी पीछे भी दिखाई दे रहा है।

और इस साइड भी एक मैदा का बोरा दिखाई दे रहा है।

ये दुकान है दुकान में बहुत सारा मूर्ति सा रखा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर बजरंगबली का भी मूर्ति दिखाई दे रहा है।

बुक्स दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कुछ डब्बा सा बहुत सारा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है हाथ में फूल लेकर इस साइड भी एक आदमी का निवरा हुआ दिखाई दे रहा है आसमान थोड़ा-थोड़ा व्हाईट कलर का दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे छड़ सा दिखाई दे रहा है कॉइल से दिखाई दे रहा है ऊपर भी बहुत सारा छड़ से दिखा धरा हुआ दिखाई दे रहा है बीच में रेड कलर का एक--

बड़ा सा पोस्टर प दिखाई दे रहा है ऊपर बॉल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा वाइट कलर का रूम दिखाई दे रहा है।

और ये ऐना दिखाई दे रहा है और इसमें पीछे जाजीम सा बिछाय टंगा हुआ दिखाई दे रहा है बॉल बॉल रहा है व्हाईट कलर का रूम है खिड़की दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे बहुत सारा आदमी से खरा हुआ है माइक लिया एक आदमी खरा हुआ है।

इस साइड बिजली लगा हुआ है इस साइड मोमोज ठंडा का बोतल से धरा हुआ है।

यहाँ पे बहुत सारा पहाड़ सा दिखाई दे रहा है बड़े बड़े पत्थर से हैं यहाँ पे हरियाली छाया हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक मोटरसाइकिल दिखा रहा है जिस पर एक पुरुष एक महिला बैठी हुई है यह साइड भी मोटरसाइकिल से लग रहा है।

ये एक स्कूल है स्कूल के बाहर बीच में ग्राउंड है ग्राउंड में हरियानी छाई हुई है घासा दिखाई दे रहा।

इस पर दिल्ली पब्लिक स्कूल का क्षेत्र दिया हुआ है इस परची पेड़ का चित्र बनाया गया है आसमान का रंग उजला दिखाई दे रहा है।

यहाँ से बहुत सारा पोस्टर छापा हुआ है यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिजली सा दिखाई दे रहा है तार सा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे ए_ टी_ एम_ दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे आदमी सब दिखाई दे रहे पुलिस भी दिखाई दे रहा है शटर खुला हुआ है कैमरा लगा हुआ है सा दिखाई दे रहा--

यहाँ पे पानी दिखाई दे रहा है नदी दिखाई दे रहा है यहाँ पे घर दिखाई दे रहा है बहुत सारे पर दिखाई दे रहा है।